साथ ही दो साइकिल एवं एक पिंडरा रोड होल्ड नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक ढोलक थोड़ा छोटा है। दूसरा उस से थोड़ा बड़ा है।

सभी झोलो का रंग अलग-अलग हैं। कुछ पीले रंग के हैं। कुछ नीले रंग के भी हैं।